इसका आधा शटर खुला हुआ है सामने एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग पर कुछ ब्लू कलर में लिखा हुआ है।

सिंह ट्रेडर्स एंड बिल्डिंग मैंटेरियल्स लिखा हुआ है।

एक वाइट कलर का बेनर है। एक रेड कलर का बेनर है।